सामने में एयरोप्लेन लैंडिंग के लिए जगह बना हुआ है और बहुत बड़ा मैदान है और हरे हरे पेड़ पौधे भी हैं और एक बिजली का फुट्टा--

लाल बैनर लगा हुआ है जिसमें लाइट भी लगा हुए हैं और है।

और बहुत सारे लोग हैं और टेंपो है और बहुत सारा बाईके भी हैं और बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है और टेंपो में भी एक पोस्टर है।

और पीछे में पर्दा है जो की कलरफुल है वाइट कलर का दीवार में पेंट किया हुआ है और टाइल्स लगा हुआ है।

ये कोई हॉस्टल है जिसके सामने एक गुलाबी कलर का झंडा लगा हुआ है और बहोत सारे खिड़कियां हैं जिसमें कांच और ग्रील लगा हुआ है और बहोत सारे हरे-हरे पौधे भी हैं।

बहुत सारे पाईप गये हुए है जो की इधर से उधर गए हुए है और एक कैमरा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जो की बहुत ही सारा प्रोडक्ट है और वाइट कलर के अलमारी बना हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है।

यह कोई स्टेशन का फोटो है जिसमें की रेलवे का चित्र बना हुआ है जिसमें इंडियन रेलवे लिखा हुआ है।

और एक आदमी माइक लेकर कुछ बोल रहा है।